यहां पर मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ तरबूज दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर मुझे एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर मुझे कुछ मशीने दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक पेन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कुछ वाहन दिखाई दे रहें हैं।

जहां पर मुझे कुछ सीट दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक नर्सरी दिखाई दे रही हैं।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

यहां पर मुझे एक कीर्ति योगा सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक कार दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहुत सारी सीमेंट की बोरी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे कुछ बेंच दिखाई दे रही है।